यहाँ पे शॉप पे काफी सारे लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं । शॉप के ऊपर हमें कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं ।

जो कि व्हाइट कलर से पेंट है और उसके ऊपर बैलून से डेकोरेट किया गया है। इसमें रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन तरह-तरह के प्लैट्स से ।

फ्रंट में मुझे एक रेड कलर की चेयर दिख रही है। चेयर के सामने पांच लोग चेयर पे बैठे हैं जिसमें से एक लेडी है।

यहाँ हमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ये मुझे कोई छोटी सी फिश की शॉप लग रही है।

जस्ट सामने एक बहुत बड़ा मिरर है वह एक चेयर पर बैठी हुई है और ये हमे एक सलून का व्यू लग रहा है जो की बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर से पेंट है।

जस्ट पार्क के पीछे हमें बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बगल में बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

घर के ऊपर काफी सारे हमें ऐ.सी. दिखाई दे रहे है। खिड़की बंद है शटर --

और ये सामने एक स्टाल लगा हुआ है जहाँ पे ऑटो हमें दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें एक बोहोत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग पर जो है बास की हमें कुछ जालियाँ जैसा लगा हुआ दिख रहा है। जिसे सेटिंग बोला जाता है। जिससे बिल्डिंग पे काम करने में आसानी होती है।

जोकि काफी सारे पिलर्स भी हमे नीचे दिखाई दे रहे हैं।